कुछ औरत है मन लाइट है मंदिर है और बच्चे लोग हैं।

जन्तु जनता उच्च विद्यालय सतायन और हरे भरे पेड़-पौधे हैं ।